इस फोटो में मुझे कुछ कार दिखाई दे रही है इस फोटो पर मुझे कुछ सड़क दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।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

मुझे इस फोटो पर आशीष सेवर मुकेंद दिखाई दे रहा है।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

नाइन सेवन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर मिट्टी का मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर खिड़की दिखाई दे रही है।

मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

मुझे एक फोटो पर दो दरवाजा दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो पर--